कुहासा जैसा दिखाई जा रहा है पीछे में पीछे कुछ ग़ाछ दिखाए जा रहे पेड़ पौधे दिखाए जा रहे--

रूम जैसा है जहां पर एक आदमी है उसने हाफ स्वेटर पहने हुए खड़े है सामने में एक--

येलो कलर की गंजी पहने हुए हैं सर पे ये येलो कलर के गमछे बांधे हुए हैं कुछ लोग।

पीने की दिखाई गई है येलो कलर का कलर किया हुआ है एक दो ट्यूबलाइट जलती हुई दिखाई दे रही है सामने में बहुत सारे--

सामने में किसी कॉफ़ी की मशीन को दिखाई गई है जो वाइट ब्लैक कलर में है उसमें--

इसी पे पूरे खांचे खांचे डिजाइन टाइप में दिखाई जा रही है और कुछ प्लेन जैसे दिख रहे हैं।

न दिखाई दे रही है एक लड़की है जोकि ब्लैक और वाइट मे प्रिंटेड --

दिखाई जा रही है नीचे कि टाइल्स ब्लैक कलर में दिखाई गई है सामने मिरर दिखाए गए एक बजरंगबली की पिक्चर है जोकि हाइड की हुई दिखाई जा रही है।

फेस दिखाते हुए दिखाई दे रहा है जो येलो कलर का जैकेट पहने हुए है ब्लैक कलर की कॉलर है सामने में कंप्यूटर ऑन दिख रही है माउस दिख रही है।